लाइट का लाइट का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बल्ब लगा है।

यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है जो की बैठी बैठी अवस्था में बनी हुई है | एक पीछे पीछे दीवाल बनी हुई है जो की व्हाइट कलर से चार खम्भे बने हुए है जो की व्हाइट कलर से है एक --

और यहाँ पर एक हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं। एक गली बनी हुई है जिसमें सुखी पत्तियां डली हुई है और एक पीछे का एक डस्टबिन भी रखा हुआ है नीले कलर से और ये पूरे चारो ओर छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर बौद्ध जी का एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर एक टेबल रखी हुई है जो कि कत्था कलर से है। यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है और इस स्थंभ के ऊपर एक बौद्ध जी की फोटो लगी हुई है और --

रेड और येलो कलर से बैलून लगे हुए है ।

और एल.सी.डी भी लगी हुई है और बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं ।

यहाँ पर मच्छियों की दुकान खुली हुई है। यहाँ पर सफ़ेद और हरे कलर से मच्छी रखी हुई हैं। यहाँ पर कैरट में मच्छी मछली रखी हुई हैं।

यहाँ पर उ बहुत सारा लाइटे लगी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स लगे हुए हैं और दो खम्बे भी लगे हुए है ।

यहाँ पर एक घर बना हुआ है जो की रेड कलर से है और घर के अंदर एक पाइप लगा हुआ है जो ब्लू कलर से है यहाँ पर घर घर की छत्त पर रेलिंग लगी हुई है जो की स्टील की लगी हुई है ।